थाने यहा पियर कलर से रंगा हुआ है वहां पे लोहे स --

सुधा का दुकान है वहां पे कुरकुरे चिप्स उम्म --

क्रिसमस बना हुआ है वहां पे स्टार बहुत सारा फुलोना है।

छत ढलाने व ढालने वाला मस्त सीन है मसाला बन रहा है वहाँ पे मजदूर माथा पे --

यहां पे अजंता डायरी है वहां पे बहुत सारे --

और पीला कलर आसमानी कलर मेहरून कलर कलर सभी --

वहां पर लाइने के तारे गया हुआ बहुत सारे हरा-भरा चारों तरफ से पेड़े उसके बगल में --

इस पे झंडा लगा हुआ है चारों तरफ बड़ा-बड़ा --

एक ड्राई क्लीनर है वहाँ पिछे लगा हुआ है वहाँ पे लाइट लगा हुआ है शटर भी लगा हुआ है।

किरके टर सब मम पे दौड़ रहा है वहां रेड कलर के पहना हुआ है असमान के लो --

और ये बहुत बड़ा-बड़ा जंगलें हैं पेड़ें हैं। यहाँ पे लोहा से घेरा हुआ है। बत --

इ झूला छै झंडे लगा हुआ है गुफा बना हुआ --

जल रहा है गेटे बंद है व्हाइट कलर से कलर किया हुआ --